यह एक किसी पंडाल का दृश्य है जिसमें कार्य अभी चल रहा है पंडाल के बाहर लकड़ी की वस्तुएँ रखी हुई है और कुछ वाहन भी लगे हुए हैं।

यह एक पूल का दृश्य है जहाँ पर पूल के नीचे से नदी निकली हुई है यह नदी चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई है यहाँ पर कुछ--

यह एक खेत का दृश्य है जो कि चारों तरफ के पेड़ों से घिरा हुआ है यहाँ चारो तरफ हरियाली ही हरियाली है।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

इसके ऊपर घर बनने का कार्य प्रारंभ है दुकान के आस-पास छोटे-छोटे पेड़ भी मौजूद है और दुकान के बाहर उनका पोस्टर लगा हुआ है।

यह एक घर है जिसका रंग लाल है घर के आस-पास कुछ वाहन दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक विष्णु शुगर मिल है जो की गोपालगंज में स्थित है।

यह एक वी मार्ट है जिसको पूरी अच्छी तरह से लाइटों से सजाया गया है और यहाँ पर इसके अंदर कपड़ा रखा हुआ है।

मैदान के आस-पास हजारों की संख्या में घर दिखाया गया है और घर के आस-पास कुछ टॉवर भी मौजूद है।